इस फोटो में हमें एक पार्क दृश्य दिख रहा हैं।

जिस में से एक बच्ची फिसल पट्टी से फिसल कर खेल रही है जो कि लाल रंग का है।

एक सी_सी_टी_बी कैमरा भी दिख रहा है और एक झूमर भी दिख रहा है।

यहाँ पे दो टेबल लगे है जिसमे कुर्सी भी लगे हुए है और वहां पे बहुत सारे लोग बैठे है।

यह एक होटल का दृश्य है जहां पे दो व्यक्ति बैठ के खाना खा रहे हैं।

नदी को पार करने के लिए ब्रिज भी बनाया गया है।

यहाँ पे एक आदमी भी खड़ा है यहां पे बहुत सारे लाइट्स लगाए गए हैं यहां पे कुछ पेड़ पौधे भी हमें दिख रहे हैं।

दो लाल टब भी दिख रहे हैं और एक टब में मछलियाँ भरी हुई हैं।

सूर्य की किरणें इन पत्थलो पर पड़ रही हैं।

अलमीरा में बहुत सारे मेकअप के सामान भी दिख रहे हैं जैसे पाउडर टिकली वगैरह।

रेस्टोरेंट के नीचे दो आदमी खड़े है। एक ने पीले रंग की टी-शर्ट पहनी है। और एक ने पिंक कलर की--

यहां छोटे बच्चों का इलाज किया जाता हैं यहां पे इमरजेंसी सुविधा भी है।

इसको बहुत अच्छे से सजाया गया है फूलों से कपड़ों से।

जो पहला मंदिर है उसके द्वार को पीले रंग से कलर किया गया हैं।

यह एक स्कूल का दृश्य है यहां पे दो स्कूल है और किनारे में एक बाथरूम भी नजर आ रहा है।

एक मिठाई की दुकान दिख रही है जो कि बहुत लग्जरी और शानदार है।

ब्लैकबेरीज़ का भी कपड़ा मिलता है लेक्मे सैलून भी है और ऊपर भी कुछ कपड़े हमे नजर आ रही है।

जिनमे से कुछ बुजुर्ग है कुछ जवान भी हैं तो कुछ पुरुष है तो कुछ महिलाएं भी हैं और कुछ बच्चे भी दिख रहे हैं।

साइड मे बहोत सारे बेल्ट भी दिख रहे है और तरह तरह के मोजे भी दिख रहे है।

यह एक बगीचे का चित्र है यहां पे बहुत सारे आर्टिफिशियल घास लगाए गए है आर्टीफिशियल पौधें भी लगाए गए हैं।

बहुत सारे बच्चे भी बैठे हैं। यहां पे हमें एक कैंची नजर आ रही है और एक कॉपी भी नजर आ रही है यहां पे एक शिक्षिका खड़ी है और बच्चों को गाइड कर रही हैं।

यह एक राशन दुकान है जहां बहुत सारा सामान रखा हुआ हैं।